यहां पर उसकी दीवाल मुझे व्हाइट कलर की दिख रही है।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

ड्रम दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मुझे पीले कलर के प्लास्टिक के डब्बे--

यहां पर मुझे एक बेटी बेटियां--

यहां पर मुझे एक गमला रेड कलर का नजर आ रहा है।

बिछी हुई दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रही है यहां पर मुझे एक पीसल पट्टी दिखाई दे रही है।

यहां मुझे वे कुर्ती ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं।

यहां पर मुझे एक हरे कलर की साड़ी पहन कर एक लेडी दिखाई दे रही है।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

यहां पर मुझे एक लाल कलर का पोस्ट दिखाई दे रहा है।